एक पानी का फव्वारा है झरना।

ये भी अच्छी जागह हैं जैसे यहाँ पे घूमने के लिए पार्क टाइप का आ सकते हैं इसमें।

जो भी करेगी सरकार देख देखा जाएगा।

सफाई हो रही है हरे-हरे घास है बैठने की जगह है घर है।

का शूटिंग करने के लिए अच्छी जगह है वीडियो बनाने की जगह अच्छी है।

बहुत से कपड़े बचे हुए है स्त्री करने के लिए कई का है।

सड़क जा रही है लगता है आगे की ओर।

के लिए जा रहे हैं लगता है धूम धाम के उलाशो के साथ है।

हरे-हरे पौधे हैं हिरण है और यहाँ पे अच्छी जगह है नेचर को फोटो खींचने के लिए लोगो को आना चाहिए।